जिसमें से कुछ महिला है और कुछ पुरुष भी हैं।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

ये यहां पर एक तस्वीर खींची गई है।

जहां पर कई सारी गाय खड़ी है जिनमें से कुछ ब्राउन और कुछ ब्लैक एंड व्हाइट --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

और लेफ्ट साइड दवाइयां विक्सिगोल्डी यह सब रखे हुए हैं।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

और ऊपर की साइड डॉग बिस्किट रखे हैं।